बिल्डिंग के ठीक बाहर हमें एक काफी चौड़ी सड़क नजर आ रही है जो की अभी अधूरी लग रही है।

इस रैंक के ठीक नीचे हमे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है जिसने क्रीम और वाइट कलर का फ्रॉक पहना है और रेड कलर की लेगी पहनी हुई है। उसके ठीक पीछे हमे एक महिला नजर आ रही है यहाँ |

इस लड़के के ठीक पीछे एक और लड़का नजर आ रहा है जो की हमें थोड़ा सा ही नजर आ रहा है।

दो लकड़बग्घे नजर आ रहे हैं।